कौन सा मंदिर है पता नहीं मंदिर का सीन-तीन पीछे जगह की बहुत बढ़िया दिख रहा है उजाला है बहुत बढ़िया मंदिर लग रहा है देखने में आदमी भी शायद ये आदमी नही है दूसरा कोई लग रहा है।